सेकेंड से राधा बोली इस फोटो में हमें--

एक व्यक्ति एक कमरे के अंदर माइक के आगे निवेदिका का नाम लेते हुए--

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस फोटो में उस बिल्डिंग के आगे--

जिस कमरे में बहोत सारी चेयरें रखी हुई हैं।

उसकी दीवारों पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं।

और इस फोटो में इसी टेबल पर एक गिलास भी--

इस ऑटो को निवेदिका नाम की एक --

इस फोटो में हमें एक कमरे के अंदर बहोत सारी अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं।